और उनके बालों में गजरा लगा हुआ है और वो नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं।

कलर किया हुआ है और डोरी पे कुछ कपड़े पसारे हुए हैं।

और एक आदमी नजर आ रहा है जो चेक चेक शर्ट पहन रखा है। सामने एक --

और कुछ बाहर में नीली रंग की दिख रही है। यहाँ पर ऑरेंज कलर की बिल्डिंग और हरे रंग की बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

टमाटर नजर आ रही है जो लाल-लाल हैं और कुछ पूचके और --

बहोत सारी दूकान है जिसकी लाल रंग की गीरेले है और वो बंद हैं।

और उस पे एसीसी लिखा हुआ है और कुछ दुकानें --

मुझे एक चित्र नजर आ रही है मानो ऐसा लग रहा है कि ये एक प्लास्टिक है और उसमें कुछ चिंगड़ी रखी हुई है।